फील्ड में क्रिकेट खेलने के लिए बनाया गया है और बहुत साफ सुथरा ये फील्ड है।

जिसमें खंड-खंड करके कम से कम छे-सात मंजिल दिख रहें ये ईट उम बालू सब मिला के बने होते हैं।

ये काठ का कुर्सी है लकड़ी से बनता है।

उम्म और यह लग रहा है रात का समय है जिसके वजह से यह लाइट जल रही है।

भगवान की मूर्तियाँ बनाई गई हैं बहुत तरह-तरह के मूर्तियाँ बनाई गई हैं यह मिट्टी और पत्थरों के मिलान से इसको तरह-तरह के डिज़ाइन से कर के इसको बनाई गई है यहाँ बहुत ही अच्छी लग रहा है।

बहुत सारी चीजें हैं और जे.सी.बी खोदाई कर रही है खोदाई कर के गड्ढा बनाएगी फिर इसमें से बालू लेकर के किसी दूसरे जगह और यहाँ कुछ कामें भी हो रही है लेकिन कोई आदमी नहीं दिख रहा --